दुकान में बहुत सारे हैं घर भी है पेड़ भी दिखाई दे रहे ।

आप देख सकते हैं इसमें लॉन्ड्री बनाया गया हैं।